हमे एक हॉल नजर आ रहा है जिस मे ग्रे कलर की खुरशिया और राड रेड कलर की कार्पेट बिछी हुई है सामने स्टेज सजा हुवा है जिस मे लैम्प और फूल मालाए लगी हुई है।

से फोटो मे हरे कलर की जाली नो मा एक बॉउन्ड्री दिखाई दे रही है बॉउन्ड्री के उस पार मैदान पर हरी घांस नजर आ रही है उस में--

इस फोटो में एक गजरे की दुकान दिखाई दे रही है पानी की टंकी पर एक बाउल रखा हुआ है जिसमें गुलाब फूल दिखाई दे रहे है गजरे के फूले--

इस फोटो मे गजरों की बड़ी दुकान दिखाई दे रही है जो गजरे लटके हुए है उनमें सफेद लाल और पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल किया गया है।

देख दिख रहे है कुछ किनारे पर छोटी झाडिया लगी हुई नजर आ रही है ऊपर आसमान दिखाई दे--

लटकी हुई दिखाई दे रही है नदी का पानी का कलर काला नजर आ रहा है जिस पर परछाई पड़ती--

इस फोटो मे एक खोखला पेड दिखाई दे रहा है। जिस के नीचे का हिस्सा लाल कलर का है। बीच मे काला रंग और ऊपर हरी पत्तिया दिखाई दे रही है। एसे दो चार पेड लाइन बार लगे हुवे और--

इस फोटो मे एक ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है जिस के सामने कुछ खंभे टीके हुवे है एक वेर हाउस दिखाई दे रहा है जिस का शटर आधा खुला हुआ है उसकी बॉउन्ड्री --